का झोपरी बनाया गया है और हरे-हरे कोल को समान भी रखे हुए हैं।

यह पुल है । पुल बहोत लम्बी है । पुल के उपर में एक आदमी बेठे हुए हैं और नीचे में पानी का रंग लाल --

कुछ लड़कियां ए व्यायाम एक्सरसाइज कर रहे है।

यहाँ बहोत सारे पानी है बहोत गहराई --

कलर्स भी रखे हुऐ हैं ये इस भगवान को सिंदूर की कलर्स से भी कलर्स से रंगा गया है।

यह क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पे सब कोई मिल कर क्रिकेट खेलते हैं। इस खेल में इगारह-इगारह पीलीयर होते हैं ।